कई आदमी ब्लैक कलर की शर्ट पहने हैं। औरतें येलो कलर की साड़ी में भी है।

जहां पे जगह जगह पे टेबिल चेयर लगे हुए हैं।

साथ में ऊपर फैन भी है लाइट्स भी दिख रही है बड़ी सी विंडो है जिसमें व्हाइट कर्टेनस लगे हुए है।

यह एक गार्डन का सीन दिखाई दे रहा है जहां पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

जहां पे खूब सारे झरने फिसल पट्टी और चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है।

नेट लगी हुई है चारों तरफ ग्रीनरी है पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

चारों तरफ लाईटिंग है घड़ी दिखाई दे रही है तरह तरह के फ्लावर पॉट रखे हुए हैं सामने कालीन बिछी हुई है।

साइड में एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पेड़ है और एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर छत भी है उसके।